इस तस्वीर में कुछ आदमी बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

और कुछ चेयर है मैट भी लगा हुआ है जो रेड कलर का है।

और वहां एक आदमी भी खड़ा है।

एक फैन लगा हुआ है एक लाइट लगी हुई--

समुंदर को बीच के जैसे--

बोट रखा हुआ है। एक बोट ब्लू कलर का एक बोट --

दो बोट ब्लू कलर का दो लाइट ब्लू कलर है।

कुछ डब्बे में घड़ी रखी हुई वाॅच घड़ी इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां स्मार्ट वॉच ।

इस तस्वीर में लैंप दिखाई दे रहा--

दो गेट दिखाई दे रहा है रिलायंस की कंपनी है ये।

और वहाँ एक आदमी खड़ा हुआ है जो ब्लैक कुर्ता में है।

और घर का कलर है व्हाइट ।

यहां पे कुछ लोग बैठे हुए हैं।

और दो स्कूटी भी दिखाई दे रही--

यह तस्वीर एक कॉस्मेटिक की दुकान की है जहां पे--

ये तस्वीर एक नदी की है।

तस्वीर में एक घर दिखाई दे रहा है जो ब्लू कलर का है।

सारे पेरेंट्स आए हुए हैं अपने बच्चों को लिवा के।

एक ब्लू कलर का बोर्ड लगा है और ये क्रीम और रेड कलर में स्कूल है।

कुछ येलो कलर में पैकेट में कुछ रखा हुआ है बाहर।

इस तस्वीर में ता एक समुंदर दिखाई दे रहा है जो पहाड़ों के बीच में है।

पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में गार्डन दिखाई दे रहा है।

एक रेड कलर का स्टेचू बॉक्स दिखाई दे रहा है।

छोटा सा और डाइनिंग टेबल नजर आ रहा हैं।

कॉपी का पेज रखा हुआ है।

कुछ पत्थर वगैरा दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में एक आदमी है जो चेयर पे बैठा हुआ है और अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा है।

और एक ए फोर साइज का पूरा सेट का पेपर रखा हुआ है।

और आसमान में वाइट कलर का बादल दिखाई दे रहा है।

उसके बगल में एक छोटा बच्चा--

नमकीन भी टंगा हुआ है चिप्स भी है।

बगल में एक स्वीट दुकान का और समोसे का दुकान--

रोड दिखाई दे रहा है कुछ कार भी दिखाई दे रही है।

घर दिखाई दे रहा है जो क्रीम कलर का बिल्डिंग है।

कई सारे बिल्डिंग व्हाइट कलर में है।

और मुर्गे को नेट में बांध करके रखा गया है।

ब्लू कलर का पॉलिथीन से ढका गया है।

यह तस्वीर एक छठ पूजा का है जो छठ पूजा पे आए हुए पर्व पे--

ऑटो है साइकल दिखाई दे रही है बाइक दिखाई दे रहा है।

कुछ लाइट्स भी दिखाई दे रहे हैं जो ऊपर साइड लगा हुआ है।

इस तस्वीर में एक बोर्ड दिखाई दे रहा है जो डॉक्टर महीप सलूजा डॉक्टर शैफ लिखा हुआ है।

बगल मे एक गेट है।

इस तस्वीर में पॉट दिखाई दे रहा है।

और ऊपर से एक घास का अलग बना हुआ है।

और यहां विंडो पे पर्दा लगा हुआ है जो पर्पल कलर में है।

और एक पानी की बॉटल दिखाई दे रही है जो येलो कलर में है।

जो एक आदमी पाइप से पानी लगा के धो रहा है।

बगल में एक पेट्रोल पंप है।

एक आदमी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में एक ट्रक दिखाई दे रहा।

बड़े से गोदाम के अंदर खड़ा गोदाम का कलर ग्रे कलर का है।